जिसका कलर पीला है उस प्लाट पर यु.के जीरो नाइन टी ए --

टू व्हीलर खड़ी है रोड पर रोड के किनारे व्हाइट कलर के पट्टे नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पर आजू-बाजू में बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहें हैं और यहाँ पर एक पूल भी दिखाई दे रहा है।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

यह अपने बच्चों को खेला रहे हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति फिश बेच रहा है ओ नीचे बैठा हुआ है उसके अ बाजू में एक --

ओर यहां पर चटई पर एक कुछ फिश नीचे डालके रक्खे हुए है।

इस चित्र में सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर विविद प्रकार के सब्जियां और फल हैं।

एक व्यक्ति चैक का शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का जींस-पैंट पहना हुआ है।

बैठी हुई नजर आ रही है जो की आद्धि पानी के ऊपर हए उसने --

यह चित्र में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र --

एैसा लिखा हुआ एक पीले कलर का बोर्ड ऊपर दिखाई दे रहा है।

चलते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी का इंजन भी यहां पर दिखाई दे रहा है।

जिसने टी-शर्ट पहना हुआ है और जींस पैंट पहना हुआ है यहां पर।

इस चित्र में एक रेड कलर की गाड़ी नजर आ रही है यहाँ पर नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ गाड़ी साफ कर रहा है।

उसके पास एक बकेट है एक व्यक्ति खड़ा है अ जिसने एक टी-शर्ट पहनी हुई हैं।

यह चित्र में एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ट्रे में नींबू और लसन दिखाई दे रहें हैं।

आत्या आई हुई एव एक लाइन में लगाई हुई दिख रही है और यहां पर कुछ लोग --

इस चित्र में खेलने का स कुछ व-व सामान दिखाई दे रहा है यहां पर वॉटर पार्क भी --